मुस्लिम समुदाय का मस्जिद है। यह मुस्लिम व्यक्ति महिला पुरुष या नमाज पढ़ रहा मुस्लिम में। आपन हिसाब से पूजा-पाठ करेलन।

मस्जिद के बगल में टावर बा। मस्जिद के गेट बा बगल में पेड़ पौधा घांस फूस लागल बा। मस्जिद के बीचो बीच रोड बा। रोड बहुत मस्त बनल बा।